ईटों का रास्ता बनाया दिखाया गया है।

और यहां पर अन्य दुकानें भी खुली हुई है।

इंडिया की दर्शाई गई है जैसा की तस्वीर में देखी पा रहे हैं यहां पर बैंक के एक साइड शटर डला हुआ है दूसरी टाइप तरफ--

साथ ही में यहां पर कई सारे व्यक्तियों की लाइन लगी हुई है कुछ व्यक्ती अपने काम के लिए इंतजार करते नजर आ रहे--

यह पानी कोई भागों में विभाजित किया गया है।

शादी में यहां पर पर्पल कलर के बैलून से उसको डेकोरेट किया गया है और इसके फ्रंट दीवार पर यहां पर डांस समाज लिखा गया--

यह तस्वीर आपको कंस्ट्रक्शन साइट की दिखाइ दे रही है यह एक खाली प्लॉट नजर आ रहा है यहां पर--

और सामने यहां पर एरोज में अह बॉल लगी हुई है कई सारी बहुत भारी भारी बॉल्स रखी गई हैं।

अपने बुक्स को देखते हुए नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर एक दुकानदार --

यह तस्वीर आपको पार्क की दर्शाइ गई है। यह सुबह का समय दिखाया गया है। यहां पर हरी भरी हरियाली नजर आ रही है।

साथ ही में देखोगे कि यहां पर बनाने का सामान भी टेबल पर रखा गया है।

और यहां पर पुल भी बना दिखाई दे रहा है।

सामने ही यहां पर गाड़ियां खड़ी दिखा--